कप्स के साथ में हमें दो पिलो भी रखे हुए दिख रहे है।

यह किसी का घर भी हो सकता है।

यह दृश्य हमें किसी स्टॉल का दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें एक ग्राउंड दिख रहा है।

बस के पास हमें बहुत सारे पैसेंजर्स नजर आ रहे हैं।

इसमें हमें बहोत सारे लोग नीचे--

की बाल्टियां पड़ी हुई नज़र आ रही है।

यह दृश्य हमें किसी जिम एरिया का दिखाई दे रहा है।

शहर का दिखाई दे रहा है।

इस दृश्य में हमें बहोत ऊंची इमारत दिखाई दे रही है।

एक सोलर पैनल भी लगा हुआ है।

इसमें सफेद और नीले कलर का रंग किया गया है।

पेड़ो की बीच मे नीचे एक सरोवर भी बहता हुआ नज़र--

इसमें कोई भीं रंक नहीं किया हुआ--

ऊपर बहोत सारी छोटी छोटी लाइट्स लगी हुई हैं।

बहोत सारी हरी-हरी घास भी उगी हुई है।